यहां एक व्यक्ति लाल रंग की शर्ट पहने कैमरा लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं। वेह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ सड़क पर कुछ वाहन खड़े हुए दिखाए गए हैं। यहाँ सड़क गीली दिखाई गई है जैसे बारिश हुई हो।

सड़क के नीचे से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां घना जंगल दिखाया गया है। वह साफ --

यहां एक देवी की प्रतिमा दिखाई गई है जिसनें लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई है।

स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहां खंबे पर तार जाती हुई दिखाई दे रही है।